यहाँ हमे साइकिलस्टोर दिखाई दे रहा है। जहाँ छोटी --

हरे कलर की घास उन भी दिखाई दे रही है तथा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

तथा एक बड़ा सा अम्ब्रेला भी दिखाई दे रहा है तथा खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

टेबल भी दिखाई दे रहे है तथा पटरियां भी दिखाई दे रही है एक मालगाड़ी खड़ी हुई भी दिख रही है।

तथा इसमें तीन ढोलक भी नजर आ रही है और जो जिसमें से दो ढोलक को ऊपर तांगे गए हैं एक हेलमेट भी नजर आ रहा है जिसका रंग का --